यह इंडियन ऑइल का एन.एस. फ्यूल सेंटर है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के फ्यूल से दिक्कत या फिर कोई परेशानी से यहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर इंडियन ऑइल कंपनी बहुत ही अच्छे पेट्रोल डीजल देते हैं।